यै एक मंदिर के बाहर का दृश्य है यह इसके बाहर बहुत ही खूबसूरत तरीके से कलाकृतियों की गई है यहां कुछ लाइटे लगाई गई है ऊपर नीला आसमान दिखाई दे रहा है सामने से एक बड़ा गेट है जिसके अंदर लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं।

यह एक मेंस पार्लर के अंदर का दृश्य है यहां ऊपर सीलिंग दिखाई दे रही है आसपास कुछ कपड़े नजर आ रहे हैं एक लड़का है जो की बाल कट करते हुए ना कटवाते हुए नजर आ रहा है।

इस दृस्य में हम देख सकते हैं यहां कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क होता हुआ नजर आ रहा है यहां एक मजदूर है यहां एक इंजीनियर है और कुछ मजदूर है जो कि अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं यह किसी छत पर शटरिंग का काम हो रहा है।

दृश्य को देखकर हम यह कह सकते हैं यह किसी डांस एकेडमी के अंदर का दृश्य है इसके आग हमे आसपास देख सकते हैं कुछ शील्ड लगी हुई है एक डांस टीचर जो कि बच्चों के डांस करते हुए तस्वीर लेता हुआ नजर आ रहा है।

ऊपर कुछ लाइट लगी हुई है ऊपर टीन का शेड लगा हुआ है।

ए सफेद कलर के बादल है जो की है इस दृश्य को बहुत ही खूबसूरत बना रहे हैं आसपास बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं छोटे पेड़ नजर आ रहे हैं नीचे हरे घास का मैदान है।